और उधर बड़ी बड़ी जंगल हैं।

यहां ब्लू रंग का गेट लगा हुआ है।

यह एक घर है और एक--